यहां पर बहोत स्वादिष्ट खाने मिलते हैं।

ताकि इनका परिवार सुखी रह सके --

हिंदुस्तान की महिलाएं बहुत शौक से जेवरात पहनती हैं।

फूल लेकर जाते हैं वो इनको गजरे --

और यहां पर नजारा भी बहुत अच्छा नजर आता है।

छोटे-छोटे दुकानदार यहां चीजें लगाए बैठे होते हैं।

बेवड़े लोग यहां पर ज्यादा से ज्यादा--

यहां से हम बहुत अच्छे नेकटार का खाली ले सकते हैं।

चमड़े के जूते भी यहां से आसानी से मिल जाते हैं।

हिंदुस्तान में बसों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है।

यहाँ पर वो स्विमिंग पूल से फायदा उठते है।